यहाँ हमें एक बड़ी से बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमें दो कलर हैं और एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है जिसका कलर ब्लैक है।

लगा हुआ है जिसपर ब्लू कलर में कुछ लिखा हुआ है। उसी के पीछे एक पेड़ लगा हुआ है और इसी की नीचे ब्लैक कलर में एक रोड दिखाई दे रहा है।

सामने यह एक कांच दिखाई दे रहा है जिसमे से सफेद कलर की रोशनी आ रही है साइड मे बालकनी मे बहुत सारा सामान रखा हुआ है ऊपर कुछ बैनरस लगे हुए है।

यहाँ पर लाल कलर की एक कुर्सी रखी हुई है कुर्सी के ऊपर एक कपड़ा रखा हुआ है उसके बाजु में एक कुर्सी और रखी हुई है।